इधर पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की काम होगा इस --

यहाँ पे एक नोदी दिख रहा है |

की अलमारी में बहुत सारी मिठाई है बहुत सारी --

माचा के ऊपर काम कर रही है एक मोई के नीच मे एक लोग खड़ा है।

सजाया है सामने एक लोग दे रहा है | पा --

सामने कुछ चेयर टेबल में कुछ स्टुडेंट --

सीलिंग में ये फैन दिख रहा है सामने एक लोग बै --

ती हुई हैं बाहर में दो बाइक --

सारे काप है। काप में सुंदर-सुंदर डिजाइन --

कुछ टेबल चेयर दिख रहा है। टेबल --

दीवाल की साइड में एक होम थिएटर दिख रहा है।

यहां पे क रास्ता देख रहा है रास्ता के साइड में एक लैंड है ये।

बैंक के सामने एक लोग खड़ा है इस बैंक में रोज बहुत भीड़ होती है।

एक लोंडे कॉफ़ी ही खाती है एक लोंडे की हाथ में कॉफी मग है।